ये पुल के नीचे का है नदी का है जिसमें गजराज जी नहा रहे हैं।

यात्रा का आ आनंद ले रहे है पड़े-पौधे है बहुत अच्छे लग रहे है देखने में पेड़-पौधे हरियाली है।

ये सलोन है जहाँ पे आप दाढ़ी बाल कटवा सकते हैं बहुत ही स्टाइलिश काटता हैं।

मनोरम दृश्य है लग रहा है नात का नाइट का कोई शो था जिसमें ये लड़का पूरा गेटप में है बहुत ही अच्छा है आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं विज़िट कर सकते हैं घूम सकते हैं देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है।

ये पोस्ट ऑफिस है जिसमें आप आ के खाता खत यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करवा सकते है या कोई सामान ट्रांसफर करवा सकते है।

ये एस.बी.आई. बैंक है जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया .

यहाँ पर शादी-समारोह का माहौल है गाड़ी दूल्हे का गाड़ी लगा हुआ है गाड़ी में दूल्हा बैठा हुआ है लड़कियां लोग भीड़ में लगा के लड़के को देख रही है।

ये हाईवे लग रहा है जोकि चौराहा है जोकि मुजफ्फरपुर सिटी इधर बैरिया बैरिया पुल --

सभी लड़कियां अपने पेरेंट्स को अपने टीचर को आ से आशीर्वाद ले रही है सुबह में स्कूल जा रही है बहोत ही अच्छे हैं बहोत ही अच्छा व्यव्हार लग रहा --

ये बिहार में कोई स्तूप है जोकि वैशाली में लग रहा है जिसमें एगो गुंबद बना हुआ है बहोत सारे --